बड़ा बढ़ियां लागता दू तलिया मकान ह हउ आरी-आरी दुगो फेड बा हउ गेट लागल बा देखे में बड़ा बढ़ियां लागता।